यहां पर एक युवक दिखाई दे रहा है जोकि ब्लैक कलर का पैंट एवं व्हाइट कलर का टीशर्ट पेहना हुआ है।

यहां पर शोरूम में बहुत सारे लाइट का प्रयोग किया गया है और इसके दीवाल का कलर व्हाइट है।

यहां पर बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे है एवं यहां पर कपड़ों का कलर रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है।

और इसके किनारे में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहु बहोत सारी कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं।

यह एक स्कूल का दृश्य है।

यहां पर चर्च का दरवाजा का कलर --

यह एक रोड का दृश्य है यहां पर रोड के किनारे में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग या और बहुत बड़े बड़े टावर दिखाई दे रहे हैं।